बोहोत सारा मेट रखा हुआ है इसमें कुछ फ्लोर मेट भी है कुछ बड़ा मेट भी है कुछ मीडियम साइज का मेट भी है काफी खूबसूरत मेट है।

खूबसूरत बकरियाँ है कितनी सारी इकट्ठा है मुझे लगता है कुछ बकरियाँ खाना खा चुकी है कुछ बकरियाँ अपना नादी में मुँह डाल के खाना खा रही है जैसे के आप लोग आपस में एक-दूसरे से टॉक कर रही है के --

सामने से पेड़ो को देखा गया यहां कुछ पेड़ हरे हैं कुछ पेड़ सूखे हुए हैं खूबसूरती बेहद ही खास और मनोरमा है।